का कलर रेड और ब्लू है।

बैलून्स का कलर रेड और ब्लैक है है।

एक दरवाजा है जिसका कलर ब्लैक है।

उसके नीचे दो लाइटें जली हुई हैं।

यह एक मॉल का दृश्य है।

इस होटल में बहुत सारी लाइटें जली हुई हैं।

छह गमले रखे गए हैं साइड में पानी के फहवारे चल रहे हैं।

इस दुकान में बहुत सारे कम्प्यूटर्स और लैपटॉप रखे गए है।

रिक्शा का कलर रेड है।

इस दुकान में एक पुतला है।

इसके ऊपर पीले कलर का कपड़ा पहनाया गया है।

यह एक गुरुद्वारा का दृश्य है यहाँ पर बहुत सारे फूल लगाए गए है।

अह एक दुकान ता दृश्य है।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

इसके साइड मे एक चबूतरा बनाया गया है जिस--

एक फायर विकेट वाला रखा गया है। एक वोट दिखाई दे रहा है।

इस मॉल का नाम सिटी स्टाइल है।

इस साइड मे दो कुर्सी रखी गई है।

जिसके ऊपर लिखा गया है।

उसके आगे बहुत से फ्लेट्स लगाए गए हैं।

व्हाइट कलर से लिखा गया है।

एक बरतन रखा गया है।

आपको एक चट्टू दिखाई दे रहा है।

उस से पेड़ लगाए गए हैं।

यह एक जिम का दृश्य है।